बहुत सुन्दर दीवाले पे डिज़ाइन बनाया हुआ है और पीला कलर से कलर किया हुआ है फूले का डिज़ाइनये हैं।

पेड़ ऐसे बोहोत सुन्दर सजाया हुआ है | बोहोत सारे आदमी वहां पे बोहोत सारे घर है | आसमान भी बोहोत सुन्दर दिख --

छट पूजा का घाट फिरसे सप्ता है | वहां पे दिए जलाये हुए है | बोहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं दौड़ रहा --

पे भैंस पानी मे थरा है। चारो तरफ हरा-भरा बोहोत बड़ा जंगल है। वहाँ पे पानी आया हुआ है। उसके बगल में बड़ा-बड़ा मकानें हैं। आसमान है बोहोत सुन्दर दिख रहे है।

बालों में गजरा लगाया हुआ है वहाँ पे मकान है पानी की टंकी रखा हुआ है चारों तरफ हरा-भरा पेड़ है। आसमान है बोहोत सुन्दर दिख रहा है।

ये दुकानें हैं बड़ा-बड़ा मकाने हैं। हरा-भरा --